यहां पर बड़े बड़े किचन के कट्टे के टाइल्स लगे हुए हैं ये फार्सियों की फैक्ट्री जैसा दिख रहा है।

उन पहाड़ों के बीच में एक आदमी एक बड़े पत्थर पर खड़ा हुआ है।

चारों तरफ हरे भरे झाड़ है यहां पर काला आसमान है।

और एक झाड़ पर गुलाबी रंग के फूल नजर आ रहे हैं।

यहां पर एक बड़ा खुला मैदान हें जहां पर बहोत सारे टेम्पुवां खड़े हुए हें।

यहां पर बहोत सारे बच्चे दिख रहे हैं और एक आदमी केक कट कर रहा है।